ये भी रेस्टोरेंट है यहां पे टेबल लगा हुआ है और एक प्लेट लगी हुई है राइस और सब्जी की।

सामने जग पड़ा है कुछअ उम् बाउल्स पड़े हैं जिसमें अलग-अलग डिशेस पड़ी हुई हैं।

ये जो मुझे दिखाई दे सामने पड़ रहा है एक टेबल लगा हुआ है खाली चेयर है किसी ऑफिस वगैरह का लग रहा है।

है एलईडी औरअम्म होटल में अम् कैमरे फिटिन किए हुए हैं।

औरआइसक्रीम पार्लर वाला उसके आइसक्रीम दे रहा है।

ये किसी कं बेडरूम टाइप दिखाई दे रहा है जहां पेअअ ब्लैंकेट पड़ा हुआ है।

कुर्ती एक अलग-अलग कलर के कपड़े डाले हुए है। एक ने ब्लू पैंट और रेड टी-शर्ट डाली है और एक ने--

यह कोई क्लब जैसा दिखाई दे रहा है स्टेज जैसा जहां पर तीन लड़के खड़े है। सेल्फी ले रहे हैं।

स्टेज जैसे है नंगे पांव खड़े हुए हैं ये लोग--

पिंक और व्हाइट बैलून से इसको सजाया गया कैमरे लाइट्स सब कुछ लगा हुआ है अभी तक यहां किसी की एंट्री नहीं हुई है ओपन एरिया दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड दिखाई दे रहा है हॉल है जहां पे सोफे लगे हुए हैं वाइट कलर के और एक पोट पड़ा हुआ है।

और उसमे प्ला प्लांट लगा हुआ है और आस पास ब्लु कलर की लाइट्स दिखाई पड़ रही है छोटी छोटी।

यहां पे आस पास में बहोत सारे उम्म इलेक्ट्रॉनिक तारे दिखाई दे रहे इलेक्ट्रिसिटी --

ऊपर की ओर फैन लगे हुए हैं ब्लैक कलर के जो कि अभी फिलहाल में ऑफ नजर आ रहे हैं।

एक चेयर पड़ी है लेकिन वहां पर कोई नहीं बैठा हुआ है और दीवारों पर कुछ पेपर्स वगैरह लगे हुए हैं कुछ पोस्टर वगैरा लगे हुए हैं।

और कोई टावर वगैरा नजर आ रहे लगे हुए पब्लिक कुछ लोग इधर आ रहे हैं जा रहे हैं और घूम रहे हैं लोग ऊपर आसमान साफ है।

कुछ जेंट्स है कुछ लेडीज है और सभी मिलके योग आसन कर रहे हैं औरअ उम्अमॉर्निंग का टाइम लग रहा है।